यहां पर हमें बहोत सारे गाय और गाय के बच्चे देखने को मिल रहे हैं।

हमे काफी सारी मिट्टी और पत्ते भी देखने को मिल रहे हैं।

कुछ रैक्टेंगुलर शेप में तो कुछ सिलैंडरिकल शेप में देखने को मिल रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक घर देखने को मिल सकता है।

और आगे में बहुत सारे घर देखने को मिल सकते हैं।

हमे यहां पे लोगो के बैठने के लिए भी कुछ दिख सकता है।

इस फोटो हमे एक बहोत बड़ा मूर्ति देखने को मिल सकता है।

इस फोटो में हमें जिम का तस्वीर दिखाया गया है।

एम_एस कोज टायर सर्विस का भी पोस्टर देखने को मिल सकता है।

इस फोटो में इंडिया गेट जैसा कुछ देखने को मिल रहा है।

इसके आगे में बहोत सारा सीढ़ी देखने को मिल रहा है।

सामने में दो आदमी भी खड़े हुए देख सकते हैं।

यहां पे एक बहुत बड़ा फिटनेस का--

सामने हमे एक सफेद कलर का घर देखने को--

यहां पे कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं।

वॉटर टैंक देखने को मिल रहा है।

और हमें ब्लू कलर के कुछ वाटर टैंक देखने को दिख रहे हैं।

और हमें दो छोटे छोटे हट भी देखने को मिल रहे हैं।

कुछ गाड़ियां और एक ठेला देखने को भी मिल सकता है।

यहां हम लोग को एक आ औरत भी देखने को मिल सकती है।

हमें यहां पे बहुत सारे बोर्ड्स और चेयर देखने को मिल सकती हैं।

छोटी छोटी घास देखने को भी मिल सकते हैं।

यहां पे बहोत सारे हमें कि चैन भी देखने को मिल सकते हैं।

भी देखने को मिल सकता है।

हमें कुछ और भी समान दिख रहे हैं।

और लड़कों के लिए भी बहोत सारे टी_शर्ट हमें टंगे हुए दिख सकते हैं।

यहां पे बहुत सारे घास हमें पानी के अंदर देखने को मिल सकते हैं।

फोटो में हमें बहोत सारे पोस्टर्स देखने को मिल सकते हैं।

इस फोटो में हमें प्लास्टिक में कुछ टंगा हुआ दिख सकता है।

कुछ बाल्टी भी देखने को मिल सकती हैं।

और बगल में एक घर भी देखने को मिल रहा है।

रोड पे वाइट कलर का स्ट्रिप देखने को मिल रहा है।

हमें गेट भी देखने को मिल सकता है।

एक आदमी हमें बाइक से जाता हुआ दिख रहा है।

एक नदी भी हमें देखने को मिल सकती है।